इहा पे हामे गौतम बुद्ध कि वहत वड़ि मूर्ति नजर आ रही है। काफि उचाइ पे मूर्ति बानी हुए है। और उनके अ-अ उनके ऊपर एक पीले कलर का कॉपड़ा राखा गआ उनको उनको शोल उड़ाआ गेआ है।

और यह पे बोहत सारे सामान मूर आ मेडल जैसे रखे हुए है एक जोत ज्वल रही हे दान पेटी रखा हुएा हे जिसमे हम दान करते छोटे छोटे बहत सारे मूर्ति बनी हुएी--

किनारे में बहुत सारी गाड़ी पार्क में खड़ी हुई लाल कलर की गाड़ी है और पर्पल कलर की गाड़ीसफेद कलर की गाड़ी है और यहां पर खंबा जिसमें बहुत सारा--

बस स्टॉप पे काफी लोग है यहां पे एक नीले कलर का परदे का टेंट बना हुआ यहां पे और यहां पे एक लाल कलर का घर बना हुआ नजर आ रहा है।

और नीचे भी सेल्फ में अलग अलग प्रकार के शैंपू है और नीचे कोल्ड ड्रिंक है पानी की बोतल है एक फ्रीज हे फ्रिज में आइसक्रीम रखा हुआ है अलग अलग प्रकार की आइसक्रीम सिंड़ी लगी हुई नजर आ रही दो लोग खड़े हुए दिख--